कुछ छोटी छोटी व्हाइट कलर की लाइट भी याह पर दिखाई दे रही है एक गमला दिखाई दे रहा--

यहा पर एक बहुत ही पुराना किल्ला दिखाई दे रहा है साथी ही इसमे बहुत ही दरबाजे भी दिखाई दे रहे ह और--

जिसमे बहत सारे रेड पीले और नीले कलर के पॅकेट रखे हुए है।